यहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है और जोकि एक दीवाल पे सीमेंटेड गेट बना हुआ है।

यहाँ पर नदी है। नदी मे कुछ अ ब्रिज बना हुआ है बड़ा सा।

आ जोकि लेटी हुई है और उनके चेस्ट का या पैट का पेट का एक्सरे हो रहा है एक्सरे मशीन के द्वारा।

यहाँ पर एक जिम है और यहाँ पर जिम में बहोत सारी अ एक्सरसाइज मशीनें हैं | जो कि अ ऑरेंज कलर की और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में हैं।